एक रेल्वे स्टेशन है यहाँ एक मालगाड़ी खड़ी हुई दिख रही है उम अ उसके साइड में कुछ हरा हरा घास दिख रहा है।

जैसे की यहाँ पे अगरबत्ती के पैकेट है मैगी के पाकेट है सेरेलेक्स रखा है साबंस दिख रहे हैं।

अ एल.ई.डी. भी ल अ रखे है और वहां पे गिफ्ट रखे है और वहां पे भगवान की फोटोज भी लगी है उनके ऊपर हार चढ़ाया गया है।

मसाला के पैकेट लक लटक कर है अ मेंहदी के भी पॉकेट लटके के हैं और कुछ और सामान वहाँ पे रखा है।

दो लेडीज है काम करने वाले एक आदमी ऊपर बैठा है वहाँ पे नज़दीकी रेती ईट अ रख कर है।

ये-ये ऑफिस है ऑफिस मे ए-अ-अ टेबल है टेबल पे टेलिफोन रखा हैफाइलस रखी है और एक-अ सर है उनके हाथ मे पेन है कागज है। उनके साम--